जैसे इस पे रंगमंच भी कुछ फंक्शन होने वाला है बच्चियों का और यहां पर बहुत सारी जनता।

इस बिल्डिंग में मुझे दो खिड़कियां भी दिखाई दे रही है छिद्र-छिद्र टाइप के और।

नीचे जमीन साफ सुथरी दिखाई दे रही है वहां पे एक शे शटर भी दिखाई दे रहा है जिसपे ताला डला हुआ है।

यहां नीचे की साइड में एक टंकी टाइप का कुछ उस पे लोहे का शामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है इस ग्राउंड में एक छोटा सा--

ह उम छोटा सा अ कमरा उन कमरा सा बना हुआ है यहां पर एक मेन गेट भी लगा हुआ है शटर टाइप का और बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहां का जो रेलिंग है।

उसने एक जींस और शर्ट पहन के रखा हुआ है और शुज भी पहन रखे हुए हैं उसने पैर पे।

मुझे एक छोटा सा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल खुर्शिया लगी हुई है कुछ लाल कलर की कुछ हरे कलर की ख़ुर्शी रखी हुई है।

और इस जो अलमारी ये जो है इसमें बहुत सारा डेकोरेशन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है और एक टैडी बेयर भी रखा हुआ है एक चेयर पर।

दूर को मुझे बहुत छोटे-छोटे खंबे भी दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है कहर टाइप का और दू-दू बहुत बल्डिंग्स भी नजर आ रही है कुछ बने हुए एक बड़ा सा खंभा भी नजर आ रहा है।

एक छोटा सा डस्टबिन टंकी टाइप का रखा हुआ है और इस ढामें पर कुछ-कुछ अच्छे से।

मुझे यहां पर एक रूम का मैंन गेट दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लेटने के लिए--

ये सोफा टाइप का या मतलब इस्टैबलिश्ड जगह टाइप का एक लगा हुआ है जबकि--

उस पर नीले कलर कांच बिछा हुआ है कुछ और एक बोर्ड भी लगा हुआ है इस पर फीमेल जनरल वार्ड लिखा हुआ है मुझे तो खिड़कियां भी दिखाई दे रही है जहां से धूप आती हुई नजर आ रही है।

इस सॉफ के बाहर एक सेंट्रल लाइब्रेरी का।

मुझे यहां पर एक छोटा सा वैसे सुंदर सा मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर फोरेस्टा का इसमें टेबल रखा हुआ है ऊपर लाइटें भी दिखाई दे रही है जो बहुत अच्छे तरीके से जिनको--

ऊपर टोपी भी सिर पर लगाए रखा हुआ है और नीचे जींस पहन रखा हुआ है और एक लड़की ने हाफ टी-शर्ट पहन रखा हुआ है।

एकदम मस्त तरीके से जली भी दिखाई दे रही है मुझे।

और स्लीपरें रखी हुई हैं बैग रखे हुए हैं अलमारियों में बहुत सारी सजावट तरीके से इनको बेचने के लिए रखा हुआ है और--

और यहां पर मेरे को एक सटर पर ताला भी दिखाई दे रहा है जो कि ताला लगा हुआ है लॉक अपना उसमें और वहां पर मुझे कोई--

घासफूस नीचे दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है दूर को कुछ एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है यहां पर एक--

और यहां पर मैं ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी जैसे कुछ ऊपर मुझे पंखा भी दिखाई दे रहे हैं और लाइटे काफी अच्छी।

मुझे यहां पर एक शेवर नजर आ रहा है ऐसा लग रहा है सिबिर जैसे कैंप लगा हुआ है डॉक्टर का।

अच्छे तरीके से सुंदर सजावट किया गया है ऐसा लग रहा है कांच लगा हुआ है दीवार में और उसको चारों तरफ लाइटे ही लाइट लगाया गया है और नीचे फर्शी बहुत अच्छा जमीन।

कुछ सामान सायद दे रही है एक लड़के को और वहां पर एक लड़का भी खड़ा हुआ है उसने अपने हाथ में वाच पहन रखा।

माहौल बहुत एकदम शांत और बहुत एकदम सुंदर तरीके से।

इस हॉल में मुझे बहुत हं सारी कुर्षियां दिखाई दे रही हैं लंबी लंबी सी जबकि--

नीचे का फर्श भी बड़ा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और यहां पर मेरेको बहुत सारी कुर्षियां।